इधर पूजा और वा पूजा हो रहा है। बहुत-सा पंडी जी बैठा हुआ है पूजा करने के लिए और बहुत सारा आदमी पूजा भी कर रहा हैं।

ये नदी है नदी के बगल में बहुत-सा पत्थर रखा है।